जिसकी सजावट बहुत ही सुंदर कर रखी है।

जिसके बाहर लोगों की भीड़ लगी है।

ये एक ए_सी बस दिखाई दे रही है।